ये यहां पे आप देख सकते हो ये आसमान दिख रहा है।

और यहां पे आप देख सकते हो डस्टबिन दिख रहा हैं लाइट दिख रही है और यहां पे ये--

पेड़ दिख रहे हैं पाईप दिख रही हैं लाइट दिख रही है और यहां पे आप देख सकते हो बाइक वगैरह भी दिख रही है।

आप देख सकते हो डॉक्टर सस्पाल का ध्यान लिखा हुआ है और ये यहां पे--

और यहां पे बहुत सारे पेड़ दीख रहे हैं।

और यहां पे दो आदमी खड़े हुए--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

और हाथ में अ अगरबत्ती लिए हुए भगवान--

ये भीड़ लगी यहां पे भीड़ लगी हुई है और यहां पे --

यहां पे आप देख सकते हो पानी ही पानी है और ये झूले दिख रहे हैं।

देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है और आसमान भी देग रहा है ये तालाब है यहां पर आप देख सकते हो--

और ये यहां पे जिम दिख रहा है और यहां पे आप देख सकते हो।

कुर्सियां लाल रंग की हैं और अंदर भी कुर्सियां रखी हुई हैं और बाहर भी एक आदमी खड़ा हुआ है।